यह होटल को बहुत ही अच्छा है।

इस दुकान में कई कुर्सियां लगाई गई हैं बैठे हुए हैं।

उसकी मम्मी पापा चाची दादा परदादा सब यहां पे--

यह एक ट्रेन है इस पटरी पे एक ट्रेन चल रही है।

इसके सामने एक बड़ा सा पेड़ पहाड़ है उसमें पेड़ पौधे है।